एक ग्लू रखा है जो नीले कलर के डिब्बे में पास में चेयर सेट है जो काले कलर में है।

ए लड़के बैठे हुए हैं एक ने काली शर्ट पहनी हुई है एक ने गुलाबी शर्ट पहनी हुई है।

रैको में कई सारी किताबें हैं और रैक पर बैलून लगा हुआ है।

और एक स्टैचू है जो कि रैबिट का है।

एक सोफा रखा हुआ है दो आदमी भी खड़े हुए।

और एक कमरा जैसा बना हुआ है जिसका रंग हरा है वहाँ पे एक खिड़की भी है।

जहाँ पर चेयर है उसके पास में एक डस्टबिन है।

ये एक पार्किंग एरिया है।

गेट के बाहर साइकिल खड़ी है और बाइक खड़ी हुई है गेट के पास में एक बोर्ड लगा हुआ है जो काले रंग का है।

ट्रैक्टर की जो छत है वो भी नील रंग की है।

यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है होटल एम.एस. रॉय करके।

और सामने एक लगी हुई है जिसमें दो लाइटें हैं और पास में उसके एक पेड़ है।